बहुत प्यार और अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यार और अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है एक छपरा दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक बहोत अच्छी सी फोटो दिखाई दे रही है एक अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है बहोत प्यारी तस्वीर देखने को मिल रही है।

मुझे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर सी तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है।

किताबों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी बुक्स किताबें पड़ी हुई नजर आ रही है बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा दृश्य --

खैसे तुझको मैं बताऊँ राहे मेरी तकती जाऊँ किनण लड़इ